यहां पे दिन हो रहा है और वहां पे एक लाल रंग का टोकरी भी है।

यहां पे सब प्रोजेक्ट बना रहे हैं।

छत पे कुछ रॉड भी हैं।

यहां पर ढेर सारे कपड़े भी टांगे हुए है।

यह एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का दुकान है।

यह फील्ड में एक झूला भी लगा हुआ है।

यह एक दुकान है यह दुकान सिलाई मशीन का है।

यहां पे ऊपर में कुछ डब्बे भी रखे हुए हैं।

इसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

उसके बगल में एक गाड़ी भी लगा हुआ है।

यह एक बोर्ड है जो बोर्ड यह खराब हो चुका है इसके ऊपर चींटी लग चुका है।

आगे में कुछ आदमी भी खड़े हैं।

उसके ऊपर एक ग़मछी भी है और यहां पे ढेर सारे कार्टून भी हैं।

यहां पे दो बच्चे भी बाहर बैठे हुए हैं और उसके बाहर एक लाल रंग का बल्टी भी है।

दुकान के बाहर एक कुछ चेयर भी रखे हुए हैं।

यहां पे ढेर सारे आदमी बैठे हुए हैं एक आदमी पीले रंग की टी शर्ट में है एक आदमी ब्लू रंग की टी शर्ट में है।

यहां पे लाइट जल रहा है और यहां पे काले रंग का कुर्सी भी है।

बगल में दो चेयर भी रखे हुए हैं और नीचे मे ढेर सारे लोहा का सामान रखा हुआ है।

यह एक शादी का स्टेज बन रहा है।

जिसके ऊपर पेड़ छोटे छोटे पौधे जम गए हैं।

ऊपर आसमान में बादल है।

उसके नीचे लाल रंग का बोर्ड भी है।

यह एक स्टेशनरी की दुकान है जिसमें ढेर सारे किताबें हैं।